ये टाटा मोटर्स है जो कि ये सर्विस सेंटर है पर वहाँ मोटर से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छा भी है और ये शटर आधा बंद है या खोल रहा है मेरे खयाल से शटर --

देख सकते हैं आप लोग स्व बहुरी यादव स्व मनोधयो कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। ये स्कूल लग रहा है के मंदिर है मुझे नहीं पता है।

और ये महिंद्रा के नाम पर दिया गया है जोकि महिंद्रा फोर विलर तो आप जानते हैं की ब्रांड है महिंद्रा । और इधर देख सकते हैं ये बोहत ही बड़ा गेरेज है जोकि एक टैंकरोडी भी आया हुआ है ठीक करने के लिए और कुर्सी-वुर्सी भी रखा हुआ है साइड में।

ओर इधर स्प्राइट - स्प्राइट भी है जो की बोहोत ही अच्छा लग रहा है। और ये फ्रिज -व्रीज में सामान सब रखा गया है। बोहोत ही खूबसूरत और बोहोत ही अच्छा है। और इधर आइसक्रीम -वाइसक्रीम भी है।